जमीन पर कई सारे हरे हरे घास उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एवं सफेद कलर के रंग से बॉर्डर लाइन बनाई गई है सीलिंग पर कई सारे बड़े बड़े लाइट --

यहां दो गाड़ियां भी खड़ी नजर आ रही है जो एक सफेद ही है और एक पीले रंग की है।

दूर तक ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं इनमें से ज्यादातर सफेद रंग की है।

इन लोगों के बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गयी है।

यहां कई सारे लोग भी खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं।

इस भीड़ में एक बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है एवं नीले कलर के अक्षर से अलाहाबाद बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जमीन पर कालीन और सफेद रंग की बड़ी सी दरी बिछाई गई है।

ऊपर काले रंग का बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है पीले रंग के अक्षर से येलो बेकरी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर किसी बीजी रोड की है यहां पानी की वजह से रोड गीली दिखाई दे रही है।

एक शख्स अपने हाथों में सफेद कलर के कपड़े लेकर खड़ा दिखाई दे रहा है।

बाहर की ओर एक बाइक एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग की खिड़कियों पर ए_सी वेंट्स लगे हुए नजर आ रहे हैं।

सीलिंग पर उम कतार से लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

सीलिंग पर कुछ पंखे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं और सफेद कलर की लाइटें जलती हुई नजर आ रही है।

दीवारों पर से लतर वाले पौधे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

सबसे बड़े वाले पर आई डबल सी यू आई_सी_यू एन_आई_सी_यू स्ट्रोक यूनिट और भी कई सारी चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही है।

सफेद रंग के अक्षर से दो सी_सी_एस एयरपोर्ट की ओर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिजली का खंबा नजर आ रहा है जिसपर तारे लगी हुई है।